यहां पर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस बेचने के लिए रखे हैं।

यहां पर दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

यह तस्वीर नीले नीले आसमान की दिखाई दे रही है यह सुंदर सी सुबह की तस्वीर--

यह बहुत सुंदर अह रंगीन सी तस्वीर आपके समक्ष दिखाई दे रही है यह एक साइकिल की शोरूम की--

रखा गया है और यहां पर सामने--

यह तस्वीर चर्च के अंदर की दिशाई दर्शाई गई है यहां पर--

जैसा की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस स्टैचू को बहुत सुंदर फूलों के स्तंभ से सजाया गया है।

गैस डलवाने की यहां पर अह ट्रक गाड़ियां खड़ी हुई हैं पेट्रोल के लिए भी गाड़ियां--

नजर आ रहा है दुकान में सभी समान --

इस समय मैं यहां पर बच्चों की रेस दिखाएं होते हुए दिखाई दे रही है और पीछे से--

बनाया गया है जिस पे बैनर लगाया गया है खूबसूरत गारमेंट्स

यह तस्वीर ऑन रोड मार्केट की दर्शाई गई है।

यहां पर हरे भरे मैदान में अ व्यक्ति बैट बॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसकी किनारे पर मिट्टी मिट्टी रेत पत्थर--

यह तस्वीर वाटर पार्क की दर्शायी गई है यह एक सुंदर से कलर फुल तस्वीर है जैसा कि आप देख ही पा रहे है।